कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ फुग्गे नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक फूल की दुकान दिख रही है।

इस चित्र में हमें एक इंजीनियर दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़ लगे हुए हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

आसमान में बादल हैं।

दो आदमी बैठे हुए हैं।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक महल जैसा दिख रहा है।

सामने हरी कुर्सियाँ रखी हैं।

इस चित्र में एक शादी हॉल दिख रहा है।

कुछ कुर्सियां दिख रही हैं।

यहाँ पर मछलियां रखी हुई हैं।

एक कार दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक जगह नजर आ रही है।

कुछ लाइटें दिख रही हैं।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

एक औरत ने गुलाबी साड़ी पहनी है।

काफी सारे पेड़ दिख रहे हैं।

एक लड़का बैठा हुआ है।

लकड़ी का कारपेट दिख रहा है।

इस चित्र में आइसक्रीम की दुकान दिख रही है काफी सारे बोरे रखे हुए हैं।